एक सरकारी ऑफिस दिखाई दे रहा है जोकि किसी राज्य का सरकारी ऑफिस है। इसके बाहर की तरफ प्लाइ का गेट है। जिस पर कांच लागा हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है।

यह किसी गड्ढें के बीचो-बीच पर लगा हुआ काम दिखाई दे रहा है। बहुत सारे मजदूर इस काम को करते हुए नजर आ रहे हैं। बीच पर एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है।

यह कॉफी शॉप दिखाई दे रही है। जिसके बाहर ब्लैक कलर का बोर्ड जिसके ऊपर बड़े-बड़े कैपिटल लेटर्स मे कॉफी शॉप का नाम लिखा हुआ है। नीचे कई सारे लड़के खड़े हो कर फोटो खिचवाते हुए नजर आ रहै है।

जो की लाल रंग की है। बगल में कुछ बाइक खड़ी हुई नज़र आ रही है। ऑटो फिलहाल खाली दिखाई दे रहा है। पीछे की तरफ एक दुकान दिख रहा है। जिसके बाहर कई सारी डोरियाँ जमी हुई नज़र आ रही है।

और काफी सुन्दर आकृति भी बनी हुयी है नीचे की तरफ बीच में पेपर ग्लाक लगा हुआ है दोनों तरफ टाइल्स लगी हुयी दिखाई दे रही है बीच में एक रेलिंग भी लगी हुयी दिख रही है जो की बीच में लगे खम्बो से जुड़े हुयी नजर आ रही है सामने रोड भी दिख रही है।

कुछ चमगादर भी बैठे हुए दिख रहे हैं। कई सारे लोग गुफा के अंदर दिखाई दे रहे है। गुफा के अंदर एक छोटी जगह दिख रही है। जिसके बाहर की तरफ आम के पत्ते का तोड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर एक पंखा भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

बोहोत सारी नाव बोटिंग के लिए यूस की जाती हैं। इन पर बोहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाए दे रहे हैं। हर नाव पर दो-दो लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और यह सब चप्पू चलते हुए दिख रहे --

इन दोनों ने लाइफ जैकेट पहन रखी है। बोट का कलर लाइट ग्रीन व्हाइट और येलो दिखाई दे रहा है और इन लोगों ने ऑरेंज कलर की लाइफ जैकेट पहन रखी है। दोनों चप्पू चलाते हुए दिख रहे हैं।

एक घर की छत दीखाई दे रही है। जिसके चारों तरफ बौंड़री वाल बनी हुई है और बीच - बीच मे पिलर बने हुए दिख रहे हैं।